लाइटें दिखाई दे रही हैं। विंडो दिख रही है कुछ बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

पानी दिखाई दे रहा है लाइटें दिखाई दे रही है।

नीचे हरा भरा घास दिखाई दे रहा है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।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

पीछे एक बलब दिखाई दे रहा है।

एक पंखा दिखाई दे रहा है एक बड़ा काउंटर दिखाई दे रहा है।

नीचे एक छोटे गाय रखी हुई है टेबल पर एक पेपर रखा हुआ है।

हाथ में एक बैट दिखाई दे रहा है बराबर साइड में जाल बंधा हुआ है।

सामने एक फरिज दिखाई दे रहा है एक फायर विकेट दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रहे हैं चेयर दिखाई दे रही है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है।

दो मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही हैं साइकिल दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे काफी सारी औरते दिखाई दे रही है आदमी दिखाई दे रहे है।

एक घड़ी दिखाई दे रही है एक हाथ में पेपर दिखाई दे रहा है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ खेलने कूदने का लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं।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

कांच का एक बड़ा दरवाजा लगा हुआ है।

ऊपर बालाजी दाढ़ी लिखा हुआ है बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

एक स्टूल दिखाई दे रहा है कुछ पोस्टर चिपके हुए हैं।

लोहे के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं स्टील की ग्रीले दिखाई दे रही है।

नीचे कुछ घास फूस दिखाई दे रहा है कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

एक एक्टिव दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है एक चारपाई दिखाई दे रही है।

कुछ बच्चे और एक आदमी दिखाई दे रहा है कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक सामने जीन्ना दिखाई दे रहा है औरतों के कुछ घगरे दिखाई दे रहे हैं प्लाजो दिखाई दे रहे हैं।

बैग दिखाई दे रहा हैं कुछ माइक दिखाई दे रहे हैं।

कैप दिखाई दे रही है पीछे बहुत सारी मैट दिखाई दे रही है।